उस पर कुछ आकृतियाँ उभरी हुई है।

बैंक के निचे ऐ ऐ सामने एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है |

और सामने की साइड में साबुने रखी है।

यह एक बनारसी साड़ी खुली हुई है।

जिसकी हल्की हल्की उम लाल और नारंगी किरणे बाहर आ रही है ।

तीनो अपनी-अपनी चटाइयों पर बैठी है।

यहाँ पर ईसाई भगवान की मूर्ति सामने लगी हुई है।

तो बहुत ही मनभावक लग रहा हे।